इस तस्वीर में एक इमारत दिख रहा है।

मकान की ईंटें दिख रही हैं।

ब्रदर्स कंप्यूटर शॉप दिख रहा है।

बाहर एक बाइक लगी दिख रही है बाइक का रंग लाल और काला है।

इस तस्वीर में बहुत सारा कुर्सी टेबल दिख रहा है।

कुछ लोग रोड पर बैठे दिख रहे हैं।

और पीछे की ओर इमारतें दिख रही हैं।

इस तस्वीर में एक एरोप्लेन दिख रहा है।

दीवार पर एक चित्र बना हुआ है।

फूल का दुकान है एक कमल का फूल दिख रहा है।

एक एयर कंडीशनर दिख रहा है।

एक आदमी लाल शर्ट पहना है।

एक बेड लगा दिख रहा है।

जिसमें कुछ बच्चे दिख रहे हैं।

सामने का दीवार लाल दिख रहा है।

सामने हरा पीर दिख रहा है।

मूर्ति राधे -कृष्ण का है।

एक मरकरी जल रहा है बहुत सारा पोस्टर टंगा हुआ है।